और बहोत बड़े बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं।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

बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यह एक डॉक्टर की दुकान दिख रही है।

औरतें आदमी और यहां ऊपर एक--

और यहां बहोत बड़ा ग्राउंड भी खाली दिखाई दे रहा है।

और पहाड़ से भी नजर आ रही हैं।

यहां बहोत सारे पीले पीले रंग के औरतें साड़ी पहनी हुई है और आदमी भी कपड़े पहने हुए हैं।

और यहां दो फोटू लगे हुए हैं एक कुर्सी पे रखे हैं बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है।

यह किसी चीज की दुकान नजर आ रही है यह बहोत सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं।

इधर बहोत सारा पानी भरा पड़ा है जोड़ में और बोहोत सारी भैसे ना रही है बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और वहां एक बड़ी भी हो रखी है उधर घर घर बै बन रहे है।

और इस खेत में बहोत सारा सामान --

और उधर बहोत सारी बिल्डिंग सी नजर आ रही है बड़े बड़े खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां सारा सामान दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़ा पेड़ भी नजर आ--

यहां बहोत सारे लड़के खड़े दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और खाली खेत भी नजर आ रहे हैं।

और एक साइकिल भी खड़ी है।

और दो आदमी ऐसे लाल टी शर्ट में खड़े दिखाई दे रहे--

यह है बहोत सुंदर होटल नजर आ रहा है बहोत अच्छे अच्छे सोफे बिछे हुए हैं।

खेतों में हरियाली लग रही है।